और बगल मे फलतल बेचने का सामान सब रखा हुआ है। अंदर जाने के लिए ये रास्ता भी अंदर भी दुकान रख लिया है ये।